यह एक रेस्तरां का चित्र है।

और उसमें कुछ गुब्बारे भी लगे हुएं हैं।

उसके गेट पर बोहोत ही सुंदर--

साथ ही मिट्टी भी नजर आ रही है।

जिसमें कुछ लोग पीछे से दिखाई दे रहे हैं।